यहां मकान भी बने हुए हैं अउर कार भी खड़ी हुई है।

और आदमी भी बैठा हुआ है जीना भी चढ़ा हुआ है कुर्सी भी रखी हुई है।

यहां कुछ फंक्शन है फंक्शन में टेंट भी बंधा हुआ है।

यहां पर बैनर भी लगा हुआ है और तखत भी पड़े हुए बैनर पर गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

और दो औरत भी बंसी की ढाल खड़ी हुई हैं।

और पेट्रोन पंप पर दो मशीना भी रखी हुई हैं।

इनके बराबर साइड में एक डालज भी हैं मिट्टी की।

पानी का झरना बेहा रहा है।

दुकान के बराबर की दुआर पर कलर भी होया होया है।